सामने एक झील दिखाई दे रही है झील लगा पानी बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है झील बहोत ही बड़ी दिखाई दे रही है।

चर्च दिखाई दे रहा है चर्च में बहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही है।

गार्डन में मिट्टी का रंग रेड कलर का और काली कलर का है।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

मेरे सामने एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पर और सारे--

ये लाइटें तस्वीर भी दिखाई दे रही हैं यहां पर कुछ।

यहां पर एक पोल भी दिखाई दे रहा है पोल बिजली का दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ--

टोरों में बहुत सारे शैंपू भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं यहां पर कुछ मैगी भी रखी हुई दिखाई दे रही है यहां पर कुछ बिस्किट भी --

यहां पर कुछ चलने के लिए पगडंडिया भी बनाई--